कुछ सोफे भी रखे हुए हैं और एक पंखा भी लगा हुआ है।

पीछे दो व्यक्ति भी बैठे हुए हैं।

यह एक होटल है इस होटल में एक मेज रखी हुई है।

ओर हरे पत्तियां वैसे भी लगी हुई हैं।

पिछली साइड कुछ बड़े पौधे भी लगे हुए हैं।

यह एक डाकघर है जिसके बाहर कुछ वादमी खड़े हुए हैं और कुछ औरतें भी खड़ी हुई हैं।

साइड में कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है।